ये सारे वहां बोतल भी है।

यह एक ट्रैक्टर है यह ट्रैक्टर में एक पंडित जी बैठे हुए हैं।

उसके पीछे एक बिल्डिंग है घर है।

यह रेलवे स्टेशन का नाम रांची है।

वहां पर कई सारे ईटा भी दिखाई दे रहा है टूट टुकड़ा ईटा का टुकड़ा दिखाई दे रहा है।

वहां पर एक माली भी है जो की सभी फूलों में पानी दे रहा है।

और यहां पर कई सारे उं चैंबर बने हुए हैं जो कि लकड़ी से बनाया गया है।

उसके पीछे भी कई सारे काउंटर में आदमी बैठे हुए हैं।

यह दुकान में टाइल्स भी बिछाया गया है जो की टाइल्स व्हाइट कलर का है।

यह हॉस्पिटल में कई सारे फ्लोर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर का तस्वीर है।

बहुत सारे अशोक लीलैंड का वहां पर बड़े बड़े ट्रक --